सामने दूर दूर तक मकान नजर आ रहे हैं।

सामने एक झंडा भी लहराया गया है।

यह मकान लाल रंग का दिखाई दे रहा है।

यह पर एक बोलोरो एक कार एक ब्लैक रंग का बोलोरो लगाया हुआ है।

मकान में एक लाल रंग की कार खड़ी की गई है।

उधर कुर्सियां भी लगाई गई है।

कुछ कपड़े बाहर भी रखे हुए हैं।

इस रोड पर दो भैंस जा रहे हैं।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

यह कपड़े की दुकान नजर आ रहे हैं।

नीचे मिट्टी वाला जमीन है।

नीचे हरे हरे घास फूस नजर आ रहे हैं।

जो पीले और व्हाइट रंग से पेंट की गई है।

यहां एक ट्रेन दी भी नजर आ रही है।

इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए नजर आ रहे हैं।

एक वाइट रंग का बल्ब भी जल रहा है।

और दो बल्ब भी ऐसे ही दिख रहा है।

इस बेडरूम में दो बेड लगाए गए हैं।

सोफे वाला कुर्सियां भी लगाई गई है।

एक बूढ़ा आदमी अपना स्कूटर बना रहा है।

एक वाइट रंग की कार भी लगाई गई है।

जो दोनों हाथ ऊपर करके आगे की तरफ देख रहा है।

बल्ब भी जल रही है।

यहां पर बहुत सारे लड़के बुजुर्गों भी नजर आ रहे हैं ।

यहां एक मकान नजर आ रहा है।

इस मकान में एक कार लगी हुई है।

इस रोड पर एक कार चल रही है।

जो बिल्कुल हरे रंग का नजर आ रहा है।

इस बिल्डिंग का बाहर एक बड़ा सा मेन गेट लगाया हुआ है।

उधर बल्व भी जल रहा है।

यहां एक बड़ी सी पूल नजर आ रहा है।

बीच में पानी आने जाने का रास्ता भी बनाया हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ कार भी लगाए गए हैं।

मकान भी दिख रहा है।